और मिस्त्री भी काम कर रहे है और यहाँ पर पाँच छह वृक्ष हैं।

और देखने में बोहोत अच्छा लग रह है और यहां पे घर के किनारे-किनारे छोटी-छोटी पेड़ दिख रही है और बहुत --

इहाँ पर एक दो हरेन दिख रहीं हैं और सब भाग रहीं हैं पानी से निकल रही है पानी पूरा क जमा हुआ पानी है सूखा पत --

यहाँ पर लगता है कुछ चीज का मेल लगा पूजा हो रहा है यहाँ पर पंडी जी भी साथ मे है पर्स लिया हुआ पुजारी भी है एक धोती पहना हुआ है दोनों धो --

यहाँ पे लिखा हुआ है आप कैमरे सब कैमरे के नजर में हैं और यहाँ पे लाइट लगा हुआ ह --

यहाँ पे मेला लगा हुआ है यहाँ पे एक खुदने वाला स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है और जाली घेराया हुआ है।

यहाँ पे लैब लिखा हुआ है वी केयर योर यहाँ सर्विस है होटल लैब नहीं है।

और एरम बिल्डिंग मकान दिख रहा है बहुत अच्छा है व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है और झोपड़ी भी दिख --